इस फोटो में मुझे महिला पुरुष बच्चे दिखाई दे र--

इस फोटो में मुझे नाव दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे तीन पुरुष और महिला दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ फैक्ट्री दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कांच की गिलासे बाउल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे ऑटो दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कमल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे औरतें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे पार्क दिखाई दे रहा है।